बहोत सारी बाइक्स खड़ी--

इसका टेस्ट बहोत यमी होता--

रहा है इसमें लाइट्स लगी--

यहां पर एक इमेज शो हो रही है।

रहा है यहां पर एक--

बहोत सारे लोग हैं और इसके बाहर पेड़--

बहुत सारे व्यू में--

फोटो है और उ--

मुझे एक फोटो में यहां पर दिख रहा हैं कि--